वहा क्रिकेट खेले शो दिखाई दे रहा है।

वहां बहोत सारे गंदगी दिखाई दे रही हैं।

वहां एक घंटी भी दिखाई दे रही है।

वहाँ बोरवेल दिखाई दे रहा है वहां बोर मारना ऐसा दिखाई दे रहा है।

वहां दो गाड़ियां ऐसे दिखाई दे रहे हैं।

वहां तीन इंसान दिखाई दे रहा है।

चार लोग दिख रहे हैं दो लड़की भी फिसल बंडी से आ रही है सो दिख रहे हैं।

एक वैन भी ऐसे दिखाई दे रही है।

वहां एक पानी का बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

वहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हे।

वहां लाइट भी दिखाई दे रहा है।

वहां ब्लैक कलर का गेट दिख रहा है कांच का डोर दिख रहा है।

वहां पे एक मोटर की दुकान दिखाई दे रही --

वहाँ मोटर को टेबल के ऊपर रखे सो दिखाई दे रहा है।

वहाँ पे एक फैक्ट्री दिख रही है।

वहां बंद चालू करने के चौक दिख रहे हैं।

वहाँ वहां पे एक नल के जैसा दिख रहा है।

वहां पे नदी दिख रही है वहां पे दो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं।

वहां पे बहुत सारा घास दिख रहा है।

वहाँ पे ही बहुत सारे लेट चमक रहे है वहां पे कुर्चि दिखाई दे रहा है वहां पर बहुत सामान बिक्रे शो दिख रहा है।